और एक गाड़ी दिखाई दे रहा है चार चक्का का।

और दो महिलाए एवं एक लड़का दिखाई दे रहा है।

एवं एक साइकिल है और एक टेम्पू दिखाई दे रहा है।

कुछ सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है एवं लाइन का तार भी है।

और एक तिरंगा झंडा है जो की बांस में लटकाया गया है।

और बहुत सारे सामान हैं।

और एक दो आदमियां दिखाई दे रहा है।

और ये बहुत सारे हेडफोन है एवं बहुत सारे कलमे है।

एवं दो तीन मोटरसाइकले हैं।

और चार लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक मोबाइल चला रहा है।

एवं लाइटे दिखाई दे रहा है जो की बहुत बड़ा है।

एक दुकान टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे यहां पे सब्जियां है।

और एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो कि सफेद रंग का है।

और बहुत सारे ईंटे दिखाई दे रहे है।

और एक दो महिला भी है जो की बैठे हुए हैं।

ओ सारे खम्बा दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर में लिखा हुआ है इंडियन --

इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे तार है।

इस चित्र में एक गाड़ी दिखाई दे रहा है जोकि टूटा फूटा हुआ है।

इस चित्र मे एक बेडरूम दिखाई दे रहा है।